यह एक साईकल इस्टैंड है.

लग रहा है कि एक व्हाइट एक ऑरेंज कलर की कुर्सी लगी हुई है.

यह लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी है.

यह वह दो चारो नृत्य कर रहे हैं और नीचे एक कालीन बिछी हुई है.

और बिल्डिंग में बोहोत सारे कलर भी हैं और अलग अलग कलर हैं.

चार पांच टाइप के कलर किए हुए हैं।

इसमें फेविकोल हे कलर पेंसिल हे कलर बॉक्स हे पेन हे और बहोत सारी चीज़े यहाँ पे उपलब्ध हे.

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं.

बलून के कलर व्हाइट और ब्लू है.

और बेसिन के बगल मे एक प्लास्टिक का बोतल पड़ा हुआ हे.

और वहां पे दो तीन बेग भी रखे हुए है एक ट्रॉली बेग भी रखी हुई है.

और रोड पे बहुत सारी गाड़ियां चल भी रही है खड़ी भी है.

और गाड़ी के ऊपर परफेक्ट भी लिखा हुआ है.

जो कांटाटोली चौक में है .

और अंदर बोहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हे बड़े-बड़े पेर है।

और सामने एक टब जैसा दिखाई दे रहा है.

और सामने तीन चार पिलर दिखाईं दे रहे है.

ओर शीशे पे एक आदमी की पिक्चर चिपकाई गई है.

सब छोटे छोटे बच्चे हेभेस --